मुझे इस चित्र में एक कैमरा लगा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में दो कुर्सी रखी हुई दिख रही है मुझे इस चित्र में एक टेबल दिख रही--

मुझे इस पिक्चर में एक फ्रेम नजर आ रहा हैं मुझे इस पिक्चर में एक चेयर रखी हुए नजर आ रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक बार कोड रखा हुआ नजर आ रहा--

मुझे इस चित्र में एक गेट दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में दो नीले रंग की पानी की टंकी रखी हुई दिख रही है मुझे ये--

मुझे इस चित्र में एक पत्थर दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में छोटे पौधे दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान दिख रही हैं।

मुझे इस चित्र में कुछ ऑटो पार्ट्स रखे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में मनीष लिखा हुआ दिख रहा है।

बर्तन मांगने के मैजिक दिख रहे हैं मुझे इस चित्र में झाडू दिख रही है।

मुझे इस चित्र में कपड़े सुखाने की पिन दिख रही--

मुझे इस चित्र में लाइट चलती हुई दिख र--

मुझे इस चित्र मे बहुत सारे पंखे लगे हुए नज़र आ रहे है।

पेड़ दिख रहे हैं मुझे इस चित्र में एयरटेल थ्री जी लिखा--